यह एक तालाब जैसा नजर आ रहा है जिसमें तीन नाव है।

खंबे की सामने स्टेडियम की चेयर जहां लोग बैठते हैं कुछ लोग--

लाल लाल पीले हरे नीले का कुछ कलर से पेंटिंग --

जिसमें हैंडलिंग करी हुई है पाइप की उसपे एक माला टंगी हुई है।

एक सूखी लकड़ी भी नजर आ रही है।

थोड़ा पानी है थोड़ी गिट्टी नजर आ रही है ऊपर से--

सब्जियों की फूड शॉप नजर आ रही है।

कहीं कहीं पानी कहीं कहीं हरियाली दिख रही है। गड्ढे में थोड़ा सा पानी इकठ्ठा हुआ दिख रहा है।

पीछे पेड़ पौधे रेड ग्रीन कलर के हैं साइड में गार्डन जैसा एक डस्टबीन भी दिख रहा नीले कलर का।